नीचे तीन खिड़कियां दिख रही--

सामने एक चेयर और इस साइड में दूसरे ओर दो चेयर लगे हुए--

दीवार पर एक ए_सी दिख रहा है।

फाइव स्टार का पैकेट वन हंड्रेड फोर्टीन रूपिज का है पर्क का पैकेट सेवन्टी सिक्स रूपिज का है।

सभी अपने अपने धार्मिक वेशभूषा में बैठे हुए हैं।

ढाबे के राइट साइड में एक नीली कलर की कार खड़ी है।

उन सबके बीच एक टेबल रखा हुआ है जिसके ऊपर एक मोमबत्ती जल रही है ।

इस कमरे में दो खिड़की है और एक खिड़की के ऊपर एक ए_सी है।